इस तस्वीर में सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और एक महिला दिखाई दे रही है।

वड़ि पत्थर के उपर खाड़ा हे। इसके आस-पास बहुत बड़े-बड़े पत्थर और पेड़-पौधे है।